छोटा-छोटा गमला में और एक आदमी है ।

और बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा बहुत अच्छा बड़ा मैदान है ।

बहुत अच्छा लग रहा है और सब घूम रहे है ।

और बहुत बड़ा-बड़ा खिड़की है ।

और तीन आदमी इधर खड़े हैं। तीन आदमी उधर खड़े हैं। कुछ बात हो रहा।

और पूरा खपरा का घर है ।

लोग उतर रहे है बहुत अच्छे लग रहे है ।

गाड़ी-उडी लगाने का अच्छा स्पेस हैऔर --

बस है और बस में बोहोत भीड़ है और ऊपर भी सब बैठे हैं। एक पुलिस भी खड़ा है। कार भी लगा हुआ है।

और बहुत भीड़ है और सब ऊपर चढ़ चढ़ के --

और घर का कलर बहुत अच्छा लग रहा है सीढ़ी भी बहुत अच्छा लग रहा है ।

बहुत अच्छा लग रहा बहुत सारे लोग भी आगे में बैठे हुए है ।

और बाकि सब छोटा-छोटा बॉटल का पानी-ऊनि सब है ।

अच्छा डेकोटेसन किया हुआ है और नीचे में पूरा लाइट लगा हुआ है। ऊपर में पूरा लाइट लगा हुआ छोटा-छोटा।

और अगल-बगल में पूरा पेड़ है ।